जिसने अपने दोनों हाथों से दोनों पेड़ों को पकड़ रखा है और बच्चे ने प पहन रखी है नीले कलर की पैंट जो कि बीच में सफेद है।

और इसमें एक साइड येलो कलर की दीवाल है एक साइड है वाइट कलर की और उसके छज्जे पे एक पंका लगा हुआ है जो चॉकलेटी कलर का है।